इसमें बहुत अच्छा-अच्छा चीज है। बहुत सुंदर लग रहा है। तार है इसमें।

दुकान है दुकान में कपड़ा रखा हुआ है कपड़ा का रंग वाइट गुलाबी --

ट्रे है ट्रे मे जलेबी रखा हुआ है जलेबी ताजा-ताजा है |

उसके नीचे कढ़ाई है कढ़ाई के उपर ट्रे रखा हुआ है।

इसमे आसमान दिखाई दे रहा है आसमान बुलु उज्ला दिखाई दे रहा है पार्क बहुत अच्छा है। इस इसमे गुनने मे अच्छा लगता है बहुत सुंदर दिखाई दे रहा--